यही लिंटर का काम करता है हमलोग गरीब आदमी है मन करता है हमलोग भी एक एकदम अच्छा-सा घर बनाए ये सब।

गांव मे ऐसा ही मंदिर बने हम लोग पूजा पाठ करेगे लेकिन हम लोग इतना गरीब आदमी --

यहाँ एक गाछ का दूकान है गाछ में एकदम बड़ा-बड़ा गाछ दिखाई दे रहा है गुलाब फूल है चमेली है चम्पा है सुरजमुखी हैं।

कुछ है नहीं तो मैदान-उदान हम लोग भी काश रहते तो एकदम बोझा ढोने वाले गधा को पालते।

यहाँ शेर बहोत खतरनाक होता है शेर को भी अपना एकदम अच्छा से पाल के रखना चाहिए।

सब अपना बच्चा-बच्चा के लिए लेके जाइए किताब भी बहुत सुंदर है पढ़ने का बच्चे का जरूरी है।

यहां एक झरना के तरह दिखाई दे रहा है लग रहा है की कोई मेला-उला हुआ है।

फूल भी है गाछ गछली भी है और आदमी बहुत एकदम सारा भीड़ लगा हुआ है।

कितना अच्छा है इधर काफी भीड़ लागा हुआ है सब डांस उनस मे --

आदमी सब पार्टी उटी में यही मानते है और --

सब अच्छा से होता है यहाँ पार्टी ऊटी मना --

फूल भी इससे फूल से सजाया है केतना अच्छा माहौल है सजाया है अच्छा से --

सब घूम फिर करता है अपना-अपना मुर्जी से कपड़ा-उपड़ा लेके।